हो सकता है ये ट्रक अ बहुत ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है अ यह एक जगह से दूसरी जगह में खा कुछ भी बोरे में कुछ भी हो सकता है खाद फल उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने में मदद --